इ एक सब्जी मार्केट हैं जहां पर बहुत सारा सब्जी मूली है साग है कोबी है केला है बैगन है बहुत सारा जाम भी लगा हुआ है यहां पर बहुत सारा आदमी खरीद रहे हैं बहुत सारे आदमी बेचने भी बैठे हुए हैं साइकिल लगा हुआ है बाइक है टोटो है।